एक सीधी मिट्टी का रास्ता जा रहा है जिसके दोनों तरफ पत्थर लगे हुए हैं।

तस्वीर के बाएं तरफ एक बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है जो अभी भी इनकंप्लीट है।

आगे के हिस्से में बड़े बड़े फूलों का ढेर है।

वर्टिकल कलर से भी ऊपर जा रहा है इनमें रहा है।

सभी में पीला और संतरे रंग का सुंदर लकड़ी के कॉटेजेस दिख रही है।

ऑटो के पीछे कुछ और गाड़ियां भी हैं।

इसके दीवारों ब्रेक से बनी हुई है और छत का काम पूरा हो चुका है।

सफेद चादर और तकिए के साथ एक नीली आरेंज बेड दिख रहा है।

कुछ लोग इन पर बैठकर बात कर रही हैं।

पीछे एक बोर्ड या बैनर दिख रहा है।

उनके ऊपर या साइड में नींबू दिख रहा है दाहिने तरफ नीचे की साइड में--

फूल गोभी और उसके नीचे हरी मिर्च की टोकरिया दिख रही हैं।

एक कंक्रीट का रस्ता गेट के तरफ से अंदर जा रहा है।

और लाइट्स से पूरा मैदान में रोशनी की गई है।

ये तरफ हरा एक्सरसाइज मैट बिछा हुआ है जहां पर बॉडी वेट एक्सरसाइज हो रही है।

एक बोट में कुछ पानी भरा हुआ दिख रहा है।

दाहिने तरफ एक ब्लैक रंग की सोफा चेयर या कुशन कुर्सी है।

एक ब्ल्यू कलर की कार बैंक के सामने पार्क की गई है।

बोर्ड पर लिखा है मोन वैली रेस्टोरेंट यह बिल्डिंग दो मंजिला वाली है ऊपर रेस्टोरेंट और नीचे मेडिकल स्टोर है।

एक व्यक्ति बोनट पर हाथ से काम कर रहा है।

नाव पुरानी और लकड़ी की बनी हुई है।

पीछे एक मिरर दिख रहा है।

दाहिने तरफ का दरवाजा एक बड़ा ब्राउन रंग का एंट्रेंस है।

टेबल के ऊपर स्टाइलिश ब्लैक हैंगिंग लाइट्स लगी हुई है।

कैफे के सामने का हिस्सा ग्लास से बना हुआ है।

जिसमे बाहर का व्यू दिख रहा है दीवारों पर कुछ फोटो फ्रेम्स लगे हुए हैं।

और एक तरफ रिजर्वेशन काउंटर और इंफोर्मेशन काउंटर जैसा बोर्ड लगा हुआ है।

बीच में एक नीला भूरा रंग की प्लास्टिक की कुर्सी रखी है।

पीछे ड्रावर और सेल्फ है जहां सामान रखा गया है।

हर चेयर के सामने आईना और सेल्फ है।

ये इमारत लाल ब्लैक कलर में है।

सामने एक ब्लैक कलर की रिवाल्विंग चेयर है जिसमें एक ग्राहक बैठा है।